यहाँ एक जंगल हैं उस जंगल में एक बहुत बड़ी पहाड़ी बनी हुई हैं पत्थर की चट्टानें भी बनी हुई हैं।

यहाँ एक दुकान है उस दुकान में बहुत सारे खिलौने रखे हुए है जिसमे लड़कियों की कुड़िया बनाई के रखी गयी है कुछ किताबे भी रखी हुई है।

रेड कलर के पर्दे भी लगे हुए है और सामने टेबल भी रखी हुई है वहाँ पर--

एक बिल्डिंग भी बनी हुई है गाड़ी भी खड़ी हुई है रोड़ है रोड़ पे कुछ लोग जा रहे है दुकाने भी लगी हुई है। वहां पर --

पीछे जंगल बना हुआ है है इसके मैन गेट पे दोनों साइड पे शेर के स्टूचू बनाकर रखे गए हैं दो झंडे लगे हुए है सामने--